यहाॅं एक छत के ऊपर इलेक्ट्रीशियन अपने प्लार के सहायता से वायर कटिंग कर रहा है। जिसमे सर पर कैप हाथो में ग्लव --

मुंह पर मास्क पहना हुआ है तेज धूप निकली हुई है तथा एक व्यक्ति अंदर की तरफ जा रहा है आस-पास बहोत सारी मशीने रखी----